नमस्कार आपका स्वागत है
मैंने प्रत्येक लूपिंग स्टेटमेंट के लिए अलग ट्यूटोरियल बनाने का निश्चय किया है
मैं इसे सरल रखना चाहता हूँ
यह सन्दर्भ के भांति लाभदायक भी होगा यदि आप देखना चाहते हैं कि कैसे कोई विशिष्ट लूप कार्य करता है
इस ट्यूटोरियल में हम व्हाइल लूप के बारे में जानेंगे
व्हाइल लूप लूप के प्रारंभ में एक कंडीशन यानि शर्त को जाँचता है और कंडीशन के सही या गलत पर निर्भर रह कर कोड का निष्पादन करता है
उदाहरणस्वरूप मैं अपना व्हाइल लूप यहाँ से शुरू करूँगा और यह कंडीशन है और यह मेरा ब्लॉकढाँचा
मैं अपने ब्लॉक को कर्ली कोष्ठकों के बीच में प्रदर्शित करूँगा
मेरी कंडीशन यहाँ है
अब इफ स्टेटमेंट में उदाहरणस्वरूप मैंने प्रयोग किया 11 अब यदि मैं यहाँ टेस्ट या लूप कहता हूँ
यहाँ पर एक लूप है और फिर एक ब्रेक विराम
अब क्या होगा जब तक 11 यह एक लूप बनाएगा
यदि मैं यहाँ कुछ करता हूँ चलिए इसको जाँचें
संभवतः आपका ब्राउज़र काम करना बंद कर देगा क्योंकि लूप तब तक दोहराएगा जब तक 11 और अनंत बार के लिए 1 हमेशा 1 के बराबर होगा
अतः चूँकि लूप हमेशा दोहराया जायेगा आपका ब्राउज़र काम करना बंद कर देगा
चलिए कहते हैं जब तक एक वेरिएबल नुम इस स्मॉलर ओर इक्वल टो 10 नुम 10 से छोटा या बराबर है और एचो के अन्दर मैं कह सकता हूँ नुम एक अरिथ्मेटिकल ऑपरेटर है
और मूलतः यह क्या करता है यह नुम को 1 से बढाता है
यह नुम num 1 लिखने के समान है
अतः यह नुम लेता है और कहता है कि यह num1 मान के बराबर है
अतः यह भी एक अरिथ्मेटिकल ऑपरेटर है
क्या होने जा रहा है कि हम कहने जा रहे हैं नुम लेसर थान ओर इक्वल टो 10 नुम 10 से छोटा या बराबर है यदि हाँ तब एचो लूप और फिर कहिये वेरिएबल नुम में 1 जोड़ दें
लेकिन वास्तव में हम क्या करेंगे कि इस समय नुम 1 बनाते हैं
अतः 1 पर लूप एक बार हो
यह फिर 2 के बराबर होगा फिर 3 फिर 4 इसी तरह सब होते हुए 10 तक और फिर यह रुक जाएगा
इसके बाद इसके नीचे जो बाकी कोड है आगे बढ़ेगा
अतः हम इसे 1 कहते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलेगा
ठीक है हमें लूप मिला १२३४५६७८९१० बार
अब इसे अधिक मज़ेदार बनाने के लिए मैं बोलूँगा लूप 1 और मैं नुम को इसके अंत में जोड़ दूँगा
असल में इसे और सरल बनाते हैं और नुम अन्दर कहते हैं यह इसको पढ़ने में सरल बनाएगा
ठीक है मैं कहता हूँ लूप 1 और 1 जोडता हूँ और फिर कहता हूँ लूप 2 और फिर दूसरा 1 जोड़ता हूँयह लूप 3 है तथा मैं और इस तरह 1 से 10 तक जोड़ता हूँ
चलिए इसको खोलें
इसे रिफ्रेश करें
और यह हुआ
आप को लूप 123 इसी तरह से 10 तक मिल गया जैसा कि आप देख सकते हैं
चलिए यहाँ इस मान को बदल कर 100 करते हैं
इसे रिफ्रेश करिए
आप देख सकते हैं यह सौ तक गया है
जितनी संख्या बड़ी होगी यह उतना ही लम्बा लूप लेगा
चलिए 6000 लेते हैं
चलिए इसे रिफ्रेश करें
यह कुछ समय लेगा
वहाँ आप 6000 तक चले गए
अतः यह इस तरह से काफी प्रभावशाली है
आप इसका प्रयास अरै के साथ जोड़ कर प्रोग्राम बनाने के लिए कर सकते हैं जो कि अरै के भीतर वर्णमाला को सामने लाएगा
आप एक अरै के प्रत्येक मान को सामने लाने के लिए लूप्स का प्रयोग कर सकते हैं
बस इसको एक बार करिए
मैं संभवतः इसको अपने अगले ट्यूटोरियल में करूँगा मगर बुनियादी अनुभाग में नहीं
यद्यपि यह बुनियादी संरचना है
मैं आपको यह भी सलाह देता हूँ कि एक वेरिएबल मैक्स यहाँ बनाइए और आप अपना अधिकतम मान यहाँ पर रखिये
यह बिलकुल वही कार्य करेगा
यह केवल समझने में सरल होगा और आप सबकुछ यहाँ पर घोषित कर सकते हैं और यह इसको निर्देश करेगा
यदि आपके पास 1 से अधिक लूप हैं
मैं इसे अपने प्रोग्राम में पठनीयता और लचीलापन के लिए पसंद करूँगा
अच्छा तो यह व्हाइल लूप था
चलिए मैं इसे संक्षेप में प्रस्तुत करता हूँ
यह प्रारंभ कि कंडीशन जाँचता है
यदि वह कंडीशन सही है तो यह कोड के ब्लाक को कार्यान्वित करेगा और आप इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं जैसे एचो अल्फा
आपके वेरिएबल की वृद्धि की जा रही है
सुनिश्चित कर लें कि आप अपने वेरिएबल कि वृद्धि करें अन्यथा लूप अनंत के लिए हो जाएगा
आईआईटीबॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद